यहां पास बहोत सारी हरी कलर की मैट लगाई गई है और इन फूलों के ऊपर पानी देने के लिए नल लगाए गए हैं।

इस फोटो मुझे बहोत से मजदूर घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ में आपा--

यहां पर कुछ सामानों को पन्नी के अंदर रखा गया कुछ समानों को अलमारीओ के बॉक्स के अंदर रखा गया है चारों ओर बहोत से कैमरे लगाए गए हैं।

यहां पास बहोत से लोग बैठे हुए हैं यहां एक कंप्यूटर भी र--

टोपनी रखी हुई हैं कुछ प्लास्टिक के बॉक्स रखे हुए हैं। यहां पर बहोत सी शटर बनी हुई है। बाहर बहोत सारे लाईट --

इस फोटो में मुझे बहुत बड़े बड़े झूले दिखाई दे रहे हैं साथ में यहां पर बहुत से लोग खड़े--

यहां पर बहुत से लोग खडे हुए हैं एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है।

नीचे बहुत से कैमरे लगे हुए हैं साथ में यहां पास एक जनरेटर रखा गया है बहुत बड़ा और बहुत सी कारें --

बहोत सारी लोग दौड़ रहे हैं यहां चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए हैं कुछ कैमरे लगे हुए है बड़ी बड़ी लाइटों --

इस फोटो में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है साथ में यहां बहोत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहां पास एक रेलवे पटरी बिछाई गई है।

यहां फ्लैग दिखाई दे रहे हैं सो इनको एक कांच के ग्लास के अंदर रखा गया है चारों ओर बहोत सारे कैमरे और कुछ लोग बैठे हुए हैं।